यह बोहोत ही खूबसूरत वाटर फाउंट है और इस वाटर फाउंटिंग के अंदर बहुत सारे कलर नजर आ रहे है।